जिसके हाथ मे कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है लड़की ने चसमा लगा कर रखा है जिसने वाइट ओर पिंक कलर के सॉक्स पेहने हुए दिखाई दे रहे है। आस-पास पहाड़ दिखाई दे रहे है।

सामने भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है जिसके आस-पास केले के पत्ते लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

इसको फूल से डेकोरेट किया गया है जिनका कलर पीला और लाल कलर का दिखाई दे रहा है ।

उपर की तरफ बादल व्हाइट और ब्लू कलर के दिखाई दे रहे है और सामने की तरफ बहोत पानी का एक तलब दिखाई दे रहा है साइड मे एक साइकिल दिखाई दे रही है जिसमे बहोत सारा सामन रखा--

आस पास कुछ खम्भे दिखाई दे रहे हैं सामने एक बड़ी कढ़ाई दिखाई दे रही है जिसमें से लड़का कुछ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है सामने एक स्टोव रखा हुआ दिखाई दे रहा है जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है आस पास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो वहा पर काम कर रहे हैं ।

हमे एक बोहोत बडा तालाब दिखाई दे रहा है जिसका पानी ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है एक लड़का दिखाई दे रहा है जो सीडी पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने वाइट कलर की शर्ट पेहनी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने रेड कलर की टी शर्ट पेहनी हुई है ओर एक टोपी लगाई हुई है आस-पास कुछ हरे पेड़-पोधे दिखाई दे रहे है।

बीच मे की तरफ रोड दिखाई दे रही है आस-पास ओर भी बोहोत सारे समान दिखाई दे रहे है लड़का एक लकड़ी की नाव पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। साइड मे एक नाव और दिखाई दे रही है।